यह एक मेले की इमेज़ है।

तिरंगा और बहुत सारे स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक --

एक बिल्डिंग है जिसमें हमें बहोत सारे --